इस फोटो में एक बुजुर्ग अंकल खड़े हुए हैं।

पीठ फेरे खड़ा हुआ है जिसने सफ़ेद शर्ट पेहेनी हुई है।

पसीने में दिख रहें हैं कुछ और लोग एक्सरसाइज भी कर रहें हैं।

एक कीपरिंग कर रहा है।

ये एक इस्टेज दिख रहा है।

कलर ना होने की वजह से --

जो के सफ़ेद पीले नीले कलरो से रंगी गई है ।

और इस जमीन पे कुछ ईटे भी रखी हुई हैं ।